यहाँ पर एक अअअअअ पार्क जैसा दिख रहा है। जहाँ के एक छोटा रूम है और यहाँ पूरा --

और अ दूसरे पे मुर्तियाँ नीचे जैसे रावन और अ गणेश जी की मूर्ति भी है सब लोग इकठ्ठा हुए हैं।

यहाँ पे सुगरकेन सब लगा के पूरा फायर डाल के कुछ पूजा कर रहे हैं लोग कई अ-औरते ने साड़ी पहनी है बच्चे हैं और--

यहां पर एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग में कई फ्लोर्स है ग्राउंड फ्लोर्स और एक दो फ्लोर्स है ऊपर उसमें बहुत सारे खिड़कियां हैं और एक --

एक के ऊपर एक रखे हुए है और ये स्टील के टम्ब्लर है।